ऊपर येलो कलर की लाइट है यहां बडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है।

और अभी जो समय है वो रात का समय है काफी रात हो चुकी है लोग रात में इंजॉय कर रहे हैं।

काफी खूबसूरत यहां का जो डेकोरेशन किया गया है और नीचे फर्श भी बड़ी अच्छी लग र--

यह अभी डीजल खाली करी है लगता है टैंकर जैसा है और यहां पे पूरी तरह से अभी खाली है जो पेट्रोल पंप है।

जो अभी जो टाइम है दोपहर का टाइम है अन्दर में मान्द में ये काफ़ी धूप है।

यह जो फोटो नजर आ रहा है यह रात का समय है और यह जो है सर्व श्री सीता ऐसा कर के लिखा हुआ है।

और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है होटल जैसे लग रहा है ये देखने से नीचे मार्बल लगे हुए हैं जो काफी खूबसूरत लग रहें हैं।

बेसिकली यहां पे सीट कवर वगैरह चेंज किया जाता है जो अभी कस यहां पे काम चल ही रहा है।

और इनका चालक है वो जो मूषक है लग रहा है वो घोड़े को दौड़ा रहा

अंदर दुकान है यह कह सकते हैं सामने कॅश काउंटर हैं यहाँ पे खूब सारे--

जाती है और यहाँ पे ज्यादा ट्रैक भी नहीं है एक दो ही मतलब कह सकते है प्लेटफार्म बना होगा यहाँ पे --

सामने एक इंस्ट एंट्रेंस बनाया गये है दो तीन जगह से काफी खूबसूरत लग रहे है।

घास भी उगी हुई हैं और जो इसकी पेंट की गई हैं वह सफेद रंग की पेंट से--

यह एक कमरे का फोटो है जहाँ पे काफी किताब कुछ रखी हुई है कुछ बोटले रखी है टेबल पे --

यह जो अगली तस्वीर दिखाई दे रही है यहां बैंड वगैरह यहां पे चल रही हैं काफी बढ़िया सा है।

ये लोग पिकनिक वाले होंगे जो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं वादियां देखने के लिए।

काफी बढ़िया साइज की बिल्डिंग नजर आ रही है रात का समय है शांत है वातावरण--

यह जो प्राकृतिक वादियों का यह पिक्चर है सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जो वहां पे घूमने के लिए आया हुआ है।